ये जो है बड़ा शहर जैसा दिख रहा है और आदमी लोग अपना अपना काम से जा रहा--

पीछे में पहाड़ दिख रहे हैं ब्लू कलर से।

यहाँ मे टोटल पांच लड़का लोग है बोट के ऊपर में दो है और बोट से बाहर तीन है।

पीछे में वो लोग जो योगा करने वाला कुछ बिछा के भी है। अलग अलग कलर का--

ब्लू कलर का है रेड कलर का है ऑरेंज कलर का है ब्लैक ब्लैक कलर का है।

ये जो है ट्रेन का खिड़की है और यहां से ट्रेन का ट्रैक दिख रहा है।

ये वॉशरूम है और इसका अंदर में बहुत सारे सामान दिख रा--

ये एक मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा है।

ये जो मस्जिद जैसा वाला है उसमें घुसने वाला जगह तीन है।

यहां हमें एक आदमी डिख रहा है जो हाट को फोल्ड करके खरा है। उसका फेस ब्लर है।

यहां में जो है कुछ प्रोग्राम चल रहा है।

और दुकान के बाहर में बहुत कुछ दिख रहा है।

घर है बाल्टीन भी है और कुछ बकेट भी है।

साइड वाला दुकान में ब्लैंकेट टीन दिख रहा--

दूसरा साइड बिल्डिंग में भी बहुत कुछ है ब्लैक के जैसा।

हमें एक आदमी दिख रहा है जिसने वाइट कलर का शर्ट पहना है और एक जींस पेंट पहना है और उसका राइट हैंड में एक मोबाइल है उसका सोल्डर में एक बैग भी है।

पीछे का वॉल ग्रीन कलर है और उसमें दो फैन हैं एक लड़का का हाथ में माइक है।

एक में दो एक कुत्ता एक आदमी और एक लड़की का पिक्चर है बीच में ड्रूल्स लिखा है।

ये दुकान जो है टीना से बना है बाहर में एक डस्टबिन है।

इनमें तीन आदमी दिख रहा है।

ऊपर में खिड़की ये सब भी दो दिख रहा।

अलग अलग टाइप का चप्पल और अलग अलग टाइप का जूता लोग दिख रहे हैं यहां में।

हमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं एप्पल है ग्वावा है वाटरमेलन है।

एक आदमी है जिसने येलो कलर का कपड़ा पहना है।

ये ठेला के ऊपर में एकता भी है और एक कार्टून बॉक्स भी है जिसका ऊपर में एप्पल लिख के है।